टेबल के ऊपर दो फोटो और--

हुई है बहोत सारी पार्किंग पे--

सभी जो कि लड़कियां हैं जो--

सामने एक सड़क पे बोर्ड लिख रहा है जिसपे कपिला--

ये एक करियाना की दुकान हैं जिसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ हैं।

ये एक जिम है जिसमें एक बोर्ड लगा हुआ है।

जिम कर रहे हैं और ये--

बहोत ही सुंदर और ये बहोत ही बड़ा--

सामने एक वॉश वेसन दिख रहा है।

हर एक गाड़ियों के टायर हैं और रखे हुए हैं जो की बहोत ही बड़ी दुकान दिख रही है जिसके अंदर ये टायर रखे हुए--

और ये क्लीनिक बहुत ही अच्छा और सफाई दार लग रहा है।

सभी आदमी सामान को देख रहे हैं।

दिन का समय है बहोत ही ज्यादा रस पड़ा हो--

दिख रही है बहुत सारे लोग।

पठानकोट मे है सामने एक बहोत बड़ा बोर्ड लिखा हुआ है प्राचीन काली माता मंदिर।